बहोत सारी मैंगी रखी हैं। यही पे टुवीसपेस्ट रखे हैं।

लगा है और वही से एक गेट है।

जंगल है और यहाँ पे थोड़ी से पानी है यहाँ पर।

यहाँ पे एक आटो है और उसमें --

यहाँ पे एक आसमान है इसमें बहोत साड़ी खिड़कियाँ लगी हुई है यहाँ --

और यहां पे बज़ार है।

स्कूल है। यहा पे बेंच बहोत सारी। यहा पे काँच है।

यही पे एक स्कूटी है।

यहाँ पे ग्रीन और ब्लू कलर की लाइट --

और यहां पे एक बच्चा माक्स पहने आए --

यहाँ पे बहौत सारे बैम्बू लगे हैं।

राउंड सा है। यहाँ पे आसमान है।

एपल है मैंगो है।